इस चित्र में एक पेट्रोल पंप है जोकि दो टंकियां लगी हुई है और बहुत सारे लोग हैं।

और छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं इधर एक बहुत ही लंबा रोड दिख रहा है और छोटा बड़ा गेट दिख रहे--

इस चित्र में एक पूल दिख रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं और नहा रहे हैं।

इस चित्र में बहुत सारे बेड दिख रहे हैं और एक लेडिज दो बच्चों के ले के जा रही है सामने बहुत ही अच्छा चित्र बनाया हुआ है।

शेर जेबरा और बहुत सारे प्रकार के जानवर दिख रहे हैं।

इस चित्र में बहुत सारे लोग हैं जो कि एक स्टेज पर छोटे छोटे बच्चे लोग नाच रहे हैं और व्हाइट शर्ट और नीचे पहने हुए हैं।